इस इमेज में काफी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पर कुछ छोटी सी इमारत सी नजर आ रही है।

इमेज मे एक स्टेचू बना हुआ दिखाई दे रहा है ये स्टेचू काफी ऊँचा बनाया गया है।